ये एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के नीचे--

राइट और लेफ्ट साइड दोनों में पानी है।

जैसे कि मैं देख रही हूं--